इस तस्वीर में मुझे एक आदमी नजर आ रहा है। आदमी पत्थर के ऊपर बैठा हुआ है।

इस तस्वीर में मुझे पहाड़ भी नजर आ रहा है इस तस्वीर में मुझे बहुत सारी पेड़ पौधे भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे बहोत सारे छोटे छोटे गाड़ी भी नजर आ रहा है।

सीलिंग पर एल_इ_डी लाइटिंग की गई है।

इस तस्वीर में मुझे एक गाड़ी भी नजर आ रहा है इस तस्वीर में मुझे--

अमूल का पेड़ भी नजर आ रहा है इस तस्वीर में मुझे बहुत सारे पेड़ पौधे भी नजर आ रहा है।

इलेक्ट्रिक के वायर भी नजर आ रहा है इस तस्वीर में मुझे पेड़ भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक गाड़ी भी नजर आ रहा है इस तस्वीर में मुझे बहोत सारे पेड़ पौधे भी नजर आ रहा है।

ये तस्वीर किसी सोलर प्लांट की है इस तस्वीर में मुझे एक वाटर टैंक दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे स्कूटी भी नजर आ रहा है इस स्कूटी में मुझे पेड भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे कुछ घर भी नजर आ रहा है इस तस्वीर में मुझे बहुत सारे पेड़ पौधे भी नजर आ रहा है।